इनमें कुछ कलरफुल ब्लैक कलर के हिरण हैं कुछ भूरे कलर के हिरण हैं कुछ ग्रीन कलर के हिरण हैं और बहुत सारी घास है जोकि ग्रीन कलर की है पेड़ लगे हैं।

घास है जिसका कलर लाइट ग्रीन कलर का है वहाँ जो पत्थर हैं उनका कलर ग्रे कलर का है।

आसपास बाउंड्री बनी है एक पेड़ लगा है पेड़ घना नहीं है।

ये एक प्रेस वाले भैया है जो कि मास्क लगाए है ब्लैक कलर की शर्ट टी-शर्ट पहने हैं।

ये एक होटल के अंदर का है। यहाँ बहुत बहुत सारे बहुत सारे लोग बात कर--